मस्ती करने का समान रखा हुवा है। यहाँ पे एक हाथी बहोत ही सुन्दर दिख रहा है।

कुछ लोग बैठ कर वहां पे विजिट कर रहे हैं। उसके अगल-बगल बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुऐ हैं जो कि बहोत ही सुन्दर लग रहे --